उम्म सारी प्रकार का फल दिख रहे है और ये दुकान बहोत अच्छी लग रही है और ऊपर हमे थोड़ी थोड़ी बेला सी आयी हुई दिख रही है जो कोई सी की है अच्छी लग रही है।